टस विंडोज का कलर व्हाइट है अँड ऊपर सीमेंट की छत डाली हुई है अँड आसपास झाडीया --

रेड कलर की क्रॉस बने हुए है यहा पे एक गोल्ड ब्लॅक कलर का मटका बनाए हुए इसके उपर हांबरेला

सॅनडिंग के लिए नीचे तार गिट्टी पड़ी हुई है यहा पे छते अह छत लगी हुई है अँड घर बने हुए है सामने एक ब्लू कलर की बिल --

यहा पे हं छत डलने काम चल रहा क्यूंकि छत का जो मिक्ष्चर बोलते है उसकी मशीन रखी हुईं है नीचे--

अंदर टेबल चेअर रखी हुई है व्हाइट कलर के टेबल है।

यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है बीच मे जंगल के बीच मे--

ये चिमनिया बनी हुई है धुँआ निकालने के लिए अँड आस पास फ़ैक्टरिया बनी हुई है ग्राउंड है जहा पे पेड़ लगे हुए है कुछ झाड़ियाँ वगेरा सुख गयी है।

ये भी पूल बन रहा है पूल का ए जो बीम है वो येल्लो कलर मे बाकी ये हरा कलर है अँड बाकी सबसे सिमेंटेड कलर मे नज़र आ रहा है रोड ब्राउन कलर का गया हुआ है।

न सामने ग्रीन और रेड कलर से इसका पेंट हैं जान--